यहाँ पर सामने एक ई-रिक्शा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ई-रिक्शा का कलर लाल नजर आ रहा है सामने कुछ लोग खड़े नजर आ रहे है यहाँ पर एक लड़का खड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर एक आंटी दिखाई दे रही है।

कांच पर कुछ स्टीकर चिपके हुए है स्टीकर में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने दो लड़के खड़े नजर आ रहे है एक लड़के ने सफेद शर्ट पहनी हुई है एक लड़के ने सफेद टी --

यहाँ पर काफी ज्यादा जगह न ऐसे खाली दिखाई दे रही है यहाँ पे काफी बच्चे ने वे खेलते दिखाई दे --

यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर यूनियन बैंक लिखा हुआ है सामने एक ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है ए.टी.एम. के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ --

रोड दिखाई दे रही है रोड पर काफी भीड़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर काफी सारे घर नजर आ रहे हैं यहाँ पर कुछ तार नजर आ रहा हैं यहाँ पर कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं।

सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ पटाखे जलाते दिखाई दे रहे है यहाँ पे पीछे गाड़ी नजर आ रही है।

दिखाई दे रहा है मंदिर काफी बड़ा दिखाई दे रहा है मंदिर के बाहर एक गेट बना हुआ है गेट के ऊपर कुछ झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ पेड़ नजर आ रहे --

दिखाई दे रही है होटल काफी बड़ी दिखाई दे रही है होटल के बाहर दीवार पर होटल सरौगी लिखा हुआ है यहाँ पर काफी सारी रेलिंग नजर आ रही हैं।